सामने हरा मैदान दिख रहा है जहाँ पे हर तरफ हरी पत्तियों वाले झे झाड़ है।

सामने एक वेडिंग रिसेप्शन का स्टेज दिख रहा है।

पिंक और पिच कलर के पर्दे लगे हुए हैं।

दो चेयर्स दिए हुए हैं दूल्हा और दुल्हन को बैठने के लिए --

जहाँ पे बीच में कुछ वेहीकल्स जा रहे हैं।

बाहर एक आदमी खड़ा है जिसने वाइट शर्ट और ब्लू पैंट पहना हुआ है।

यह इमेज अ एक मंदिर का है जहाँ पर बहुत सारे लोग वरशिप के लिए आए हुए हैं।

सामने अ एक घर दिख रहा है जहाँ बहोत सारे साधु बैठे हैं।

झण्डा लेकर खड़े हुए हैं डेकोरेशन बहुत अच्छा किया हुआ है।

कोई स्कूल या कॉलेज का फंक्शन है ये --

ये फुटबॉल का ग्राउंड है फुटबॉल खेलते हुए लोग हैं यहाँ पे --

बाकी साइड में ब्राउन कलर के अ वुड कलर लगा हुआ है।

और बीच मे से एक ट्रैक गया है जिसके ऊपर मिनी ट्रेंस चलती है बच्चों के लिए वो ट्रक भी दिख रहा है मिडिल मे--

जहाँ पे पीछे हमें तिरंगा भी दिख रहा है।

और बीच में दिख रहे है दो अ एंट्री जअ की जगह है दो एंट्री करने की --

ये छोटे छोटे पौधे जो बेचते हैं उसकी शॉप है ये ओपन स्पेस पे है।

सामने बहुत सारे अलग अलग तरीकों के पौधे हैं।

ग्रेइश वाइट कलर के पत्थरों से बना हुआ है।

और उसके आसपास बहुत ग्रीनरी है पेड़ बने पेड़ बहुत सारे हैं आसपास --

जहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक टेबल है।

सामने इमेज जो है ये रात के वक्त की है।

बहुत अच्छी ग्रीनरी है बीच में एक रास्ता है जिस पे तीनों बच्चे जा रहे हैं।

ये एक फ्लामिंगो सेंचुरी का फोटो है।

इस साइड में एक ऑरेंज कलर का रूम जैसा बना हुआ है।

और हम बीच में देख सकते हैं कि एक आदमी खड़ा हुआ है।

और बहुत अलग अलग तरीको के पौधे यहाँ पे रखे हुए हैं।

और टेबल के नीचे हम एक डस्टबिन भी देख सकते हैं ।

बिल्डिंग्स की पूरी इमेज उस पानी में दिख रही है।

ऊपर आसमान का कलर बिल्कुल लाइट ब्लू कलर का है।

दूर दूर तक हमें सिर्फ ग्रीनरी ही नजर आ रही है।

सोनपुर गाँव की है छट के तैवार की --

कुछ लेडीज जा रही है औरतें हैं जिन्होंने ग्रीन और रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है।

सामने हम देख सकते हैं दो बिल्डिंग जैसे दिख रहे हैं।

बहोत ही ग्रीनरी नजर आ रही है पूरे गार्डन में --

और अलग अलग कलर के फूलों के पौधे नजर आ रहे हैं।

पीछे रेड कलर का फ्रिज रखा हुआ है।

यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ है।